यहाँ पर दो ट्यूब लाइट भी रखी हुई है और सामने एक घर है।

उसकी साइड में एक बच्चा जा रहा है जो रेड कलर की शर्ट पहना हुआ हैं और वाइट कलर की पैंट पहना हुआ है | यहाँ पर सब बहुत सारे ट्री भी नजर आ रहे हैं | एक ट्री पर रेड फूल भी लगे हुए हैं।

उसका मिनारा व्हाइट कलर का है यहा पर एक लोहै का लोहै की जालिया भी लगी हुई है यहा पर से आसमान भी दिख रहा है यहा पर से खंभा भी दिख --

यहाँ पर से बहुत सारे ट्रीज भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर से एक घर नजर आ रहा है जो रेड कलर का है।